यहाँ पर एक गेट पुल भी दिखाई दे रहा गेट भी दिखाई दे रहा है देखने बहुत अच्छा लग रहा है साइकिलें भी दिखाई दे रही बहुत सारी आदमी भी दिखाई दे रहे--

यहां पर स्टिकर दिखाई दे रहा है बैनर भी दिखाई दे रहा है उस पर लिखा है बाल दाढ़ी चटाई भी दिखाई दे रहा है एक लड़का भी दिखाई दे रहा है कांच भी दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है एक बन्दा भी दिखाई दे रहा है नाँव भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है और बादल भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे है ठेला भी दिखाई दे रहा है जे कुछ खा रहे हो नाव भी दिखाई दे रहे बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे पार्क भी दिखाई दे रहा है।